ये सुधा दूध फैक्ट्री है। यहाँ से सुधा का दूध हर डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होता है।

एयरपोर्ट है एयरपोर्ट पे यात्री सब बॉम्बे दिल्ली ऑस्ट्रेलिया --

ये पुल जो है नदी में बना हुआ है यात्री को आने-जाने का समस्या ना हो इसके लिए और पुल के नीचा कलरफुल पानी दिख रहा है।

का मंदिर है इसमें शो के लिए आगे से फूल लगा हुआ है।

और चढ़ने का सीढ़ी है सीता जी का मंदिर है ये सीता स्थली है सीतामढ़ी।

इस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पाँच मंजिल के मकान हैं। निचे मोटरसाइकिल स्कूटी साइकिल सब लगा हुआ है।